ये चित्र भी कुछ खान झाड़ों का है जो बहुत सारे झाड़े है और कुछ ऊपर की ओर वेरा लगे हुए है मंदिर ही नजर आ रही हैं।

पानी है बीच में और रोड दिख रही है।

ये चित्र में कुछ मंदिरों का है जो कमानों से बना हुआ है और एक लाइट लगी हुई है आसमान दिख रहा है अंधेरा है और ठहरी हुई--

ये चित्र मोती का है जो एक शोरूम है।

यह चित्र में कुछ एक बड़ी सी कंपन अ कंपनियां महान है इसमें कोई आदमी नहीं है और एक झंडा लगा हुआ है।

लंबे -लंबे झाड़े है आसमान दिख रहा है क्लोड्स दिख रहे हैं।

ज्यादा पानी नी थोडा पानी